और एक व्यक्ति है यहाँ पर गाड़ी में गाड़ी सुधार रहा है और दूसरा व्यक्ति चेयर पे बैठा है। ये एक मैकेनिक की दुकान है इसमें गाडी के नंबरस भी दिख रहें हैं।

पर्पल पर्दे लगे है यहाँ पे पीछे एक पोस्टर लगा है जिसमें किसी स्कूल का है किसी भी चीज़ का नाम वैगरह --

पिक्चर्स में हमे एक व्यू दिख रहा है ये किसी अ जगह ए.टी.एम. बैंक या किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड जगह है यहाँ पे काफी लोग भी है जो यहाँ पे लाइन्स लगा के खड़े हुए है कुछ लोग अंदर है कुछ लोग बाहर है।

ये कत्थक टाइप से कुछ डांस कर रही है यहाँ पे किसी चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते है कि पीछे टेंट वेंट भी लगा हुआ है यहाँ पे माइक्स भी लगे हुए है और ये --

मंदिर के बाजू में एक नदी है यहाँ पे बहुत सारे लोग है जो पूजा कर रहे हैं कुछ बच्चे हैं यहाँ पे एक लड़की है जो फोन हाथ में ले कर खड़ी हैं।